से पूरा एकदम अच्छा लग रहा है वहां पे देख सकते है की पौधा है कितना सुन्दर लग रहा है मत पूछिए ये भैया का एकदम पिक बहुत सुन्दर आया है कितना अच्छा चस्मा लगाया है। कितना --

देख सकते है यहाँ पे कितना अच्छा- अच्छा क्वालिटी दिख रहा है ये तो लग रहा है की दही है ।

यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है इधर यहाँ पे एक थो गेट है इधर लगा हुआ है खुला हुआ गेट है ये पार्किंट में जाने वाला ये रोड है हमको लग तो रहा है उधर में --

सरसों तेल वाला तो नही है लग रहा है सरसो तेल वाला है का तो पता नहीं चल रहा है लेकिन जो भी है बहूत अच्छा है यार हमको नहीं पता चल रहा है ये सब नहीं देखें है कभी देखने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे सब फल का पौधा लगा रहे है उधर भी बहुत अच्छा लगाए है उधर भी अच्छा लग रहा है बाड़ी में भी कुछ लगा हुआ है खेत बाड़ी में धीरे- धीरे कुछ -कुछ करके बहुत सारा सामान लगाया हुआ है यहाँ पे भरेगा बहुत--

यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है देख सकते है कितना सुन्दर लग रह है ये नजारा है मिस्त्री भी कितना अच्छा काम कर लेता हैं यार कितना सुन्दर लगता है बहुत सुन्दर लग रहा है ये--

ये क्या बता सकते है इतना अच्छा है इतना सुन्दर है की मत पूछिए बहुत बहेतरीन है कितना सुंदर है मत पूछो यार बहोत झकास लग रहा है जो भी है बहुत सुन्दर है मत पूछो बहुत अच्छा कितना सुन्दर है।

इसका कलर पिंक वाला मस्त है एकदम मत पुछिये बहुत सुन्दर है जो भी है लेकिन इसमें जो कोण आइस क्रीम ये सब है न ये बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है हमको ऐसा-ऐसा चीज दिखाई--